गजरा भी लगाया है और इन्होने लम्बे बाल भी रक्खे हैं --

ये तस्वीर विशाखा डायरी पार्लर की है यहाँ पर कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं --

दूसरी औरत ने ग्रीन कलर का सूट लगाया है --

इस तस्वीर में काफी सारे हैं जिस में --

इस स्टूल में एक रेड कलर का भी है ---

काफी छोटे-बड़े पेड़ लगे हुए हैं और साइड्स में यहाँ पर एवरग्रीन्स भी लगे हैं।

ये तस्वीर बड़े बोर्ड की है और यहन पर काफी बडा समुन्द्र है --

रूम भी है जहाँ पर साइड में एक ए_सी लगा हुआ है जहाँ पर एक अलमारी भी है।

भी है आगे भी यहाँ पर काफी सारे टेल्कोमे वगेरा --

ये तस्वीर पेट्रोल पंप की जहाँ पर --

यहाँ पर इस सफ़ेद रंग की बिल्डिंग के गेट का कलर येल्लो कलर है --

ये तस्वीर एक सब्जी वाले भैया की है जिसमे से इस आदमी ने --

ये तस्वीर एक ग्राउंड की है जहा पर कई सारे पेड़ लगे हुए हैं --

यहाँ पर एक आदमी ने सफ़ेद रंग की टी- शर्ट लगाई है --

ये तस्वीर एक सड़क की है जिसमे दो आदमी चल रहे हैं पीछे से यहाँ पर गाड़ियाँ भी चल रही हैं --

यहाँ पर एक गाड़ी और एक रिक्शा चल रही है --